यहाँ बहूत सारे बसे खड़ी हैं यह बस का केबिन बना हुआ है बस स्टाफ का |

तो हां सब लोग इकट्ठा हुवे हुए हैं।

ये तो मोबईल की शॉप दिख रही है एक सैमसंग गैलेक्सी की वीवो की इंफोटेक की है |

नीचे गोल स्पेस सर्कल पे --

वहां भूरे-भूरे घास दिख रही है।

पानी की बॉटल है स्प्रे की।

राइट साइड में पेड़-पौधे बने हुए है आसमान दिख रहा है टॉवर दिख रहा है।

यही एक शॉप है मिठाई की यहाँ पर।

निचे भी हरियाली दिख रही है ये लाल पत्थरों से बना है।

एक घर है ये घर में --

कलर हर तरह के कंघे रखी हुए हैं कैंची रखी हुई है।

और पेड़-पौधे दिख रहे हैं सड़क दिख रही है नीले और सफ़ेद कलर करा हुआ है।